यह एक बिल्डिंग हैबिल्डिंग मे हमे कई सारे एक्शन दिखाई दे रहे है पिल्लर वाली वह है इसके बगल मे एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही हैऊपर सफ़ेद बादल दिख रहे है हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे है बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

ये एक एजन्सि के अंदर का फोटो है यहां पर हमें कई सारी गड़िया है जो कि खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जिनको बेचना है यहां पर नीचे फर्श भी है जो कि काफी क्लीन है वहां पर हम देख सकते हैं बाहर एक मीडियम पोर्शन दिखाई दे रहा है

दिखाया गया है आस पास हमें कुछ और भी दिखाई दे रही है ऊपर आसमन दिखाई दे रहा है।